जैसे कि हम देख पा रहें लग रहा है का मंदिर का गेट है और बोहोत सारे आदमी और साधारण लोग इधर- उधर जा रहे हैं। कोई अंदर जा रहा है कोई बाहर आ रहा है। बोहोत सारे आदमी लोग हैं जो कि कुछ बेच रहे हैं। हवाई लड्डू --

जैसा की हम लोग देख पा रहे हैं यह एक होटल है और होटल में बहोत सारे चेयर और कुर्सियां लगाए गए हैं।

जैसे की हम देख पा रहे हैं लग रहा है की बहोत बड़ा शहर है और शहर में बहोत सारे आदमी लोग इधर-उधर जा रहे हैं और एक बिल्डिंग हमको न नजर आ रहा है जोकि बन रहा है।

साइड में एक ठे एक एक कार भी नजर आ रहा है उस साइड में |